एक बड़ा सा अम चक्का वाला गाड़ी खड़ा है।

एक किवाट नजर आ रहा है किवाट के रंग ब्लू है और चार पाया है पलपल कलर का।

और सामने में एक कार खड़ा है एक बॉस नज़र आ रहा हैं बिल्डिंग के पास--

एक शादी का मंडप दिखता है और एक दूल्हा दुल्हिन बैठे है दूल्हा का कपड़ा का कलर --

पीला कलर है और दुल्हन लाल हरा पहनी है और उसके पास में एक पंडित बैठा हैं।

और सामने में एक आदमी खड़ा है सफेद र अ सफ़ेद कलर का सर्ट पहना है ब्लैक कलर का पैंट पहना है।

और बस के अंदर में कुछ लोग बैठे है सामने में स्टीकर है झडा का गोरमेंट विकल लिखा है।

कुछ छोटे-छोटे घाँस हरा कलर का नज़र आ रहा है सामने में एक बड़ा गच नज़र आ रहा है।